यह एक सुपर बाज़ार है। यहाँ पे हमारे जरुरत की सब चीजें लगभग मिलती है। यहाँ से हम बर्तन अपने खाने के समानें प्लास्टिक के समानें और बहुत कुछ खरीद सकते है।

यहां पे लोग पूजा करने आते है। मंगलवार और शनिवार के दिन यहां पे बहुत अधिक भीड़ होती है। बहुत सारे लोग आते है। पूजा करते है।

टी.यु.वी. गाड़ी रखी हुई है। फोर व्हीलर जिसकी सर्विसिंग की जा रही है इसके पार्ट्स बदले जा रहे हैं । यहाँ पे गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। यहाँ पे अच्छे-अच्छे मिस्त्री होते हैं जो गाड़ियों को ठीक करते हैं ।

यह एक फूलों का बाग है।